जिन में बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है एक बीचों बीच में भी मूर्ति बनी हुई है जिसमें ये हाथ जोड़ के पालथी मारा हुआ है।

और बहुत से घर भी है यहां--

यह एक फूलों पत्तियों से बनी हुई है यहां पे बहोत सारी पत्तियां हैं और सूरज की रोशनी भी इनपे दिखाई दे रही है यहां आस पास --

यहां पे सोफा डबल बेड सिंगल बेड डाइनिंग टेबल अलमारी ड्रेसिंग टेबल सेंटर टेबल आदि फर्नीचर है।

कुछ बच्चों की और के फोटो साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रही है नीचे भी पत्थर और मिट्टी है।

यहां पे एक साइकिल ग्रीन कलर की खड़ी है और बाहर एक स्कूटी है जहां पे कपड़े और जचे हुए हैं।

यहां पे एक नाव हैं जिसमें येलो कलर का बना हुआ हैं।

यहां पे आसमान भी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है आसमानी कलर की छत बनी हुई है।

गेट लगे हुए व्हाइट कलर के और यहां पे पेड़ भी लगा हुआ है और यहां चेयर भी लगी हुई है और कोई भी यहां दिखाई नहीं दे रहा है।

यहां पे बहोत सारे लड़के और लड़किया है ये एक फैमिली पिक्चर है यहां पे किसी का भी फेस दिखाई नहीं दे रहा --

और यहां पे एक फूजी की सूटकेस रखा हुआ है।